और दूसरा यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो करतब दिखा रहा है और --

और उसके बैक साइड पर एक घरनुमा भी बना हुआ है।

और यहां पे काफी सारे बच्‍चें हैं हूं और वो बैठे लिख रहे हैं का --

और ऊपर उसके नाम भी लिखा हुआ है अकैडमी का --

यह एक मंदिर है जिसके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो कि घूम रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं।

पूजा घर है जिसमें एक मूर्ति बाहिर रखी हुई है और उसके नीचे बहुत --

और इसमें बहुत सारी औरतें हैं और बच्‍चे भी खेल रहे हैं यहां पे और --